और एक बहुत ही बड़ा एक किला है। अगल बगल घास उगे --

यह तस्वीर एक घर की हैजो कि यह बहुत बड़ा-सा घर है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक बाइक खड़ी हैजो कि किनारे और ऊपर जाने के लिए सीढ़िया भी बनी हुई ।